बुक डिपो का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। बुको की शॉप दिखाई दे रही है। सड़क पे दो पुरुष जाते हुई दिखाई दे रहे हैं। कई गाड़िया भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं। आसपास कई सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रही हैं। पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। वाहन आते जाते दिखाई दे रहे हैं। कई सारे स्त्री पुरुष भी आते जाते दिखाई दे --

कई सारे पुरुष स्त्री नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार जाते हुई दिखाई दे रही है। नदी मे काफी ज्यादा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। हल्का-हल्का अंधेरा सा दिखाई दे --

इस चित्र मे भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है जैन धर्म के स्वामी दिखाई दे रहे हैं काफी सुंदर और विशाल मूर्ति दिखाई दे रही है।